और सीलिंग पर व्हाइट कलर है यहां पर नीचे फर्श पर मार्बल लगा हुआ है।

यहां पर एक स्विच बोर्ड भी लगा हुआ है और एक मिरर भी लगा हुआ है।

इस बिल्डिंग के आगे दो स्टॉल भी दिखाई दे रहे हैं लंबे बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे --

यह एक खाली कंपाउंड का फोटो है।

यहां पर एक स्टील की रेलिंग लगी हुई हैं।

इसमें बहोत सारी लाइट लगी हुई है और लोहे के राड ऊपर से लगे हुए हैं।

यहां पर चार लाइटें जल रही है।

यहां पर आगे एक ब्लू कलर की बोतल रखी हुई है।

यहां पर बहुत सारे कपड़े रखें गए हैं यहां सामने रैक पर कपड़ा रखा गया है।

यहां पर बहुत सारे पत्ते हैं जो जमीन पर गिरे हुए हैं।

जिनको येलो कलर से बनाया गया है।

यहां सामने एक ब्लू कलर का टेबल लगा हुआ है यहां की दीवारें स्काई ब्लू कलर की है।

सामने एक ब्राउन कलर का अलमीरा रखा हुआ है।

इस फोटो में दो पेड़ दिख रहे हैं जो बिल्कुल चिपके हुए हैं जिसमें एक बच्चा चढ़ रहा है।

जिसने येलो कलर की शर्ट ब्लैक कलर की जींस पहनी है और रेड कलर के शूज पहने है।

यह एक ए टी एम की फोटो है।

उसके ऊपर एक लाइट लगी हुई है यहां तीन दीवाल सफेद कलर की है ।

यहां पर एक स्कूटी खड़ी है जिसका कलर व्हाइट है और एक बाइक खड़ी है जिसके ऊपर हेलमेट रखा हुआ है इसकी गेट का कलर ग्रीन है।

जिसके ऊपर ब्लैक कलर की रॉड से डिजाइन बनाया गया है इस छत का आगे का कलर व्हाइट है और येलो भी है।

यहां पर बहोत सारे मिट्टी के बर्तन भी दिखाई दे रहे--

यहां पर जमीन का कलर येलो है और खुला आसमान है।

इस फोटो में एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर ब्लू और वाइट कलर से लाइम टेक लिखा हुआ है।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

बहुत सारे लोगों की भीड़ है।